एक पिंजरा दिखाई दे रहा है जिसमें दो पक्षी रखे हुए है मिट्ठू है जिसका कलर है पीलाहरा और ब्लू है और इस पिंजरे में एक ट्रे रखा हुआ है।

--और दरवाजा सीसा लगा हुआ है खिड़की दिख रही है और दिन का समय है टाइल्स दिख रही है फ़र्श का कलर क्रीम कलर का हैं ।

यहाँ पर एक कपडे कि दुकान दिखाई दे रही है जिसमें दो फ्लोर है और शीशे लगे हुए हैं बाहार तीन चार डेम रखे हुए है।

यहाँ पर ये एक रेल्वे स्टेशन है जहां पर ब्रिज दिख रही है ब्रिज के उपेर चलने कि सीढ़ी नजर आ रही है कत्थे कलर कि और --

पहन के और यहाँ पे ढेर सारे यूं छोटे-छोटे पौधे से रास्ता को सजाया गया है क्या है और बड़े-बड़े पेड़ भी लगे है एक मकान दिख रहा है पीले कलर का आसमान भी दिख रहा है।

ईट की जिसकी जो लाल और पीले कलर कि है और पेड़ भी लगे हैं किनारे पर--

यह एक चर्च है जिसके बाहर जिसका कलर पीला कलर का है और यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है।